यहाँ पर एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही हे।

यहाँ पर ट्रैन आती है।

यहाँ पर मोटे-मोटे पिलर बने हुए हैं। लाइब्रेरी में लोग बुक्स पढ़ने आते --